ये एक ग्राउंड का दृश्य हैं। इसमें काफी प्लेयर्स खड़े हैं।

सभी ने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।

ये एक पार्क की तस्वीर है।

ये एक बैंक की तस्वीर है।

ये एक सड़क की तस्वीर है।

यहां पर उम्म काफी खड्डे भी किए गए हैं।

बीच में काफी सारे टेबल भी लगे हुए हैं।

आदमी अपनी ई रिक्शा को पकड़ कर खड़ा है।

इसके सामने एक काफी बड़ा मिरर लगा हुआ है।

कुछ फ़िशेस वाइट कुछ ब्लैक कलर की हैं।

ये एक ब्लैक कलर की गाड़ी है।

इसके बाहर बड़ी बड़ी जयमाला को टांग कर रखा गया है।

इसका नेम सिटी सेंटर सलून है ऑनर का --